नमक अ की डिब्बी रखी गई है प्लेट और ग्लास रखे गए है टिश्यू रखे गए है।

इस बिल्डिंग के सामने हम देख सकते है की काफ़ी सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और बोहत सारी भीड़ इक्कठी दिखाई दे रही है।

और इसमें बाहर जिस तरह से चन्दन और फूल पत्तियाँ डली हुई दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है मनो अंदर किसी भगवन की मूर्ति रखी हो।

और पीछे एक किसी दुकान की फोटो है जिसमे कुछ मोटर्स लिखा हुआ है केदार मोटर्स कर के बोर्ड लगा हुआ है।

लकड़ी से बने नसेनी सीढ़ी रखी हुई है जिससे पेड़ पर चढ़ा जा सके।

जिनपर चाय कु ज --

इनमें से एक आदमी के मुँह में पिज़्ज़ा का एक बाईट है। दूसरा आदमी मोबाइल चला ते हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ हम देख सकते है की एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पर बोहत सारी बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है।